मुर्गी जो है इसका कलर व्हाइट है।

यहाँ सिर्फ प्लेन उड़ाने भरती है।

और एक गेट दिख रहा है और उस गेट पे बैलून लगे हुए हैं और बैलून का कलर रेड व्हाइट ब्लू ग्रीन है।